एक आदमी है जो कोरोना जाँच कर रहा है और एक लड़की खड़ी हुई है।

यहाँ बहुत सारे पेड़ पौद्ये दिखाई दे रहे हैं।